यहाँ पे बहुत बड़ा मैदान भी है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी हैं और उसके अंदर बलून लगे हरे सफ़ेद और ऑरेंज कलर के बलून लगे हैं।

यहाँ बहुत सारी पब्लिक भी बैठी हैं यहाँ पे एक लड़का जो कि लाल कलर की शर्ट की पहना हुआ है और काली पेंट पे --

यहाँ पे चद्द्रे भी टंगी है सामने एक मस्जिद है जोकि सफेद कलर की

लाल कलर का पुताई यहां पर बहुत सारे कांच लगी हुई हैं और यहां जो जमीन है वो----

बहुत सारी गाड़िया खड़ी है यहां पे गाड़ी के ऊपर एक लाल कलर का हेलमेट है।